ऊपर का यहां पर पटरियों से ऊपर का रास्ता इधर उधर जाने का रास्ता भी--

यह आपको शापिंग मॉल कौमप्लेक्स की तस्वीर दिखाई गई है यह एक मॉल की तस्वीर है।

और सभी कुछ अवेलेबल है यह कलरफुल तस्वीर दिखाई गई है।